यहां पे पुलिस फोर्स भी दिया जाता है।

बायोलॉजी लैब है यह एक प्रयोगशाला है यह प्रयोगशाला में डॉक्टर लोग प्रयोग करते हैं जांच करते हैं।

यह एक लैब है यह लैब में --

यह एक बिल्डिंग है।

यहां पे और से बहुत से जानवर भी कैद करके रखे होंगे परन्तु यहां पर एक हिरण है जो एक पिंजरे में कैद है जो देखने में सुन्दर है।

यहाँ पे बच्चों के लिए क़िताब कॉपी पेंसिल कटर इरेज़र और अलग-अलग चीज़ पढ़ने की मिल जाती है यह दुकान में --

यह दुकान में रिचार्ज भी किया जाता है।

यह पेट्रोल पंप में बहुत सी गाड़ियों की लाइन लग जाती है यहां पे पेट्रोल और डीज़ल डलवाने के लिए यह पेट्रोल पंप हमेशा बिजी रहता है।

यह मंदिर भुवनेश्वर मंदिर है यह मंदिर में लोग पूजा करने के लिए आते है यह मंदिर तीर्थ स्थल मंदिर है यह मंदिर में लोग डेली पूजा करता है।

यह एक एच.डी.एफ.सी. ए.टी.एम. है यह एच.डी.एफ.सी. ए.टी.एम. के बाहर प्रत्येक दिन भीड़ होती है ।

यह कॉलेज में बहुत लड़के पढ़ते है यहां पर लड़की-लड़के पढ़ते है यह कॉलेज का नाम सिन्हा कॉलेज है यह कॉलेज में लगभग एक लाख बच्चे पढ़ते है।

यहाँ पर श्री नवग्रह शांति जिन मंदिर है यह मंदिर में गौतम बुद्ध की मूर्ति रखी गई है यहाँ पर तीन प्रकार की गौतम बुद्ध की मूर्ति है।